और बस के ऊपर बहुत सारे आदमी चढ़े हुए हैं।

इसके सामने की ओर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें एक आदमी का पोस्टर लगाया गया है।

ऊपर में एक लंदन ब्रिज एल थ्री लिखा गया।

और यहां पे बहुत सारे पौधे और गमले गुलदस्ते रखे गए हैं।

जो अपने पॉकेट में दोनों हाथ डाले हुए है।

सामने की ओर बहुत सारा पुतला रखा गया है जिसमें तरह के कपड़े पहनाया गया है।

और इसके पीछे दो आदमी बैठे है और एक वाइट कलर का शर्ट पहना है।

इसमें शिवम टेलीकॉम लिखा है।

और एक बोर्ड है जिसमें शिवम टेलीकॉम बजाज फाइनेंस जीरो परसेंट लिखा गया है।

यहां पर बहुत सारे आदमी देखने आए हैं।

यहां पर बहुत सारी महिलाएं और एक पुरुष खड़ा है।

और बगल में बहुत सारे गम रखे गए हैं।

यह एक बिल्डिंग का दिखाया गया है।

और उसमें एक दुर्गा माता का तस्वीर गया है।

राजू के पास स्प्राइट का बोतल भी है।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

एक सी_सी_टी_वी कैमरे का भी दिख रहा है।

हेलमेट के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर भी रखा गया है।

जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

जो रेड कलर का है और व्हाइट कलर का होटल सीता बैनर में लिखा गया है।

और नीचे बहुत सारा केला रखा गया है।

और इसके सामने बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

उस दीवाल में एक कार्टून बनाया गया है।

और के सामने तकिया रखाया गया है।